और कुछ पेड़ पौधे नजर आ रहे है।

एक मैदान नजर आ रहा है मैदान में घास लगी हुई नजर आ रही है।

एक दुकान दिखाई दे रही है।